अ कुर्सियाँ भी बनी हुई हैं और ऊपर छत पे टीन शेड बना हुआ है जिससे धूप --

और बहोत ही अच्छे-अच्छे से झूले बनाए गए हैं और एक लोहे के हैंनीले रंग हैडार्क हरा रंग हैगहरा हरा रंग हैपीला हरा र रंग है।

टूरिस्ट के लिए बोहोत ही अच्छी है। काले रंग के पेड़ है खुला आसमान है। एक आदमी खड़ा हुआ है जो फिरोजी रंग का नेकर पहने है।

दो आदमी बस के बाहर खड़े हैं कुछ हरे रंग की और तेज़ हरे रंग की पट्टीयां हैं बस --

ये एक तस्वीर है बहोत ही सुंदर सीयहां एक लड़का बैठा हुआ है जो एक तस्वीर खिंचवा रहा है पीछे लाइट लगी हुई हैं।

वार्डरोब है लकड़ी का। इसमें कपड़े रख सकते हैं। बहोत सारा सामान रख सक --

यह बहुत ही सुंदर जगह है। बड़ी जगह है। यहाँ पे ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। ये बहुत ही बड़ा महल जैसा बना हुआ है। बहोत बड़ी इमारत है।